रेडी मेंट गारमेंट का एक शॉप दिखाई दे रहा है राईट साइड के उपर ब चदर लगी हुई है।

यहा पे एक गधा दिख रहा है गधे की आखे भी अच्छे से दिख रही है और पीछे दूसरा भी एक गधा दिख रह अहै गधे का फार्म लग रहा है।

यहा पे एक किचन दिख रहा है किचन का अलग अलग कलर में पूरा बना हुआ है और ब्लैक एंड वाइट कलर का ध्रो भी बना हुआ है।

और काच के रेक बने हुए है और विंडो है।

जहां पे काफी सारे बेंचेस पड़ी हुई है लाइट ब्राउन कलर की और वाइट कलर का सीलिंग दिख रहा है और पंखे भी दिख रहे है व्हाइट कलर के।

और एक ए_सी दिख रही है है वाइट कलर का आजू बाजू में नेट वाली विंडो दिख रही है।

यहा पे मेरे को एक प्रोग्राम चालू हो पारा होरा वो दिख रहा है।

फैशन के अलग अलग क्लोथस हेंक किये हुए है।

यहा पे मेरे को एक ग्राउंड दिख रहा है जो क्रिकेट का ग्राउंड है और अ--

पि _वि_सी के छपरे लगे हुए है वो दिखरा है और लेफ्ट साइड में पूरा गार्डन एरिया दिखरा है जहा पर काफी अच्छी ग्रीनरीस है।